यहाँ ब्रीज की फोटो दिखाई दे रही है साइड मैं बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है बिजली क खम्बे है ब्रीज की रेलिंग है रोड है।

यहाँ पर कुछ बच्चे कागज की कार्ड शीट को फोल्ड किए हुए खाली खुला छोड़े हुए पकड़े है कुछ लोग बैठे है पीछे की ओर बड़ी-बड़ी खिड़कियां है।

जिसमें बाल्टी है दो व्यक्ति खड़े है एक बड़ी सी मशीन है एक बहुत बड़ा कंटेनर है स्विच बोर्ड है कैमरा है वेंटिलेशन के लिए खिड़की है दरवाजा है फर्श है।

एक लेडिस सफेद कपड़े में उनको खड़े होकर देख रही है गमला रखा हुआ है खाली चेयर्स ख रखी हुई है बच्चियां खड़ी है।

यहाँ पर एक बड़ा सा चर्च हैं साइड में बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक चमचमाती हुई काली कलर की कार खड़ी है सामने की और कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यहाँ पर घर बन रहा है ऊपर की और कारीगर बैठे हुए है कुछ लोग पैदल चल रहे है।

यहाँ पर जल प्रपात बना हुआ है साइड मे पक्की ईटों से बनी हुई घाटिया है बिच मे गर्त मे से पानी प्रवाहित--